यहाँ एक बगीचा है और यहाँ पे बहुत सारे फूल के पेड़ लगे हुए हैं और यह बगीचा बहुत ही हरा-भरा दिख रहा है।

लोग यहाँ पे घूमना काफी पसंद करते हैं। यहाँ पे नाव भी चलती है जिसमें की लोग नाव का आनंद लेते हैं।

यह एक मेनस सैलून है और यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते है बाल कटआने दाड़ी बनवाने और यहा पे बहुत ही अच्छी तरीके से बाल काटा जाता है ।

यह घर काफी खूबसूरत बनाया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।